ये खिड़की दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर की दीवार पर डिजाइन दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है फोटो दिखाई दे रही न्यूज़ पेपर दिखाई दे रहा चेय्र्स दिखाई दे रहा है और रेड कलर का गेट दिखाई दे रहा है।